इस चित्र मे एक मैदान दिख रहा है पेड़ दिख रहे है ऑटो दिख रहे है पे एक लड़के बैठे हुए दिख रहे हरी घास दिख रही है बड़े बड़े पेड़ पहाड़ दिख रहे है आसमान दिख रहे है ।

इस चित्र मे बहुत सारे गुब्बारे फुले हुए दिख रहे है लाल और सफेद अंदर दो आदमी खड़े हुए है नकली वाले कपड़े पहने हुए --